एक गाड़ी और है उसमें एक महिला बैठी है एक लड़का बैठा है एक जेंट्स बैठा है।

एक साइकिल से अंकल जा रहे हैं एक गाड़ी है उसे पे --

बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हैं दो लड़के हैं वो कहीं जा रहे हैं लाइट का खंभा लगा है।

दो-तीन आदमी काम कर रहे हैं।